वहीं ऊपर ही तरफ बहोत से दो-तीन साल के छोटे-छोटे बच्चों की फोटो और साइकिल --

वही हमें नीचे की तरफ से कुछ पत्थर लगे हुए दिख रहे हैं वही हमें उस तरफ बड़े-बड़े पेड़ छोटे पेड़ दिख रहे हैं।

हमें सामने की तरफ कुछ अंडे कुछ बोतल में चॉकलेट्स और ऊपर कुछ टंगे क्रैक्स भी रखे हुए दिख रहे हैं।

यह फोटो एक घर की है जो हरे रंग से कलर हुआ है और उसके गेट पे बोहोत सी अलग-अलग कलाकृतियाँ भी हैं।